ये तस्वीर में मुझे एक पीछे की तरफ मीनार दिखाई दे रहा है मीनार का बहुत अट्रैक्टिव और शानदार दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक स्पीकर भी लगा हुआ है और ये पुराने टाइम का दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ मुझे एक आदमी फ़ोटो खिचावाते हुए दिख रहा है जिसने कॉलर वाली टीशर्ट टीशर्ट पहनी हुई है और उसके पीछे कुछ झाड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और उनकी कटिंग अच्छी की गई है।

ये तस्वीर में मुझे एक अस्पताल दिखाई दे रहा है। अस्पाताल में बहोत सारे मुझे डॉक्टर नर्स दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने माक्स पेहना हुआ है।

और सामने की तरफ मुझे एक अमर ज्योति का एक बोर्ड दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ एक पेट्रोल पंप का बोर्ड दिखाई दे रहा है और यहां पर मुझे जो जमीन दिखाई दे रही है वो कच्ची दिखाई दे रही है और एक दुकान भी दिखाई दे --

में मुझे एक पानी का ढेर दिखाई दे रहा है पानी के ऊपर एक हाथी खड़ा हुआ है हाथी के ऊपर मुझे एक इंसान दिखाई दे रहा है जोकि बम्बू लेके खड़ा हुआ है।

यह तस्वीर में मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में पानी भरा हुआ है पानी का कलर मुझे हरा भरा दिखाई दे रहा है पेड़ों के वजह से हरा दिख रहा है पीछे की तरफ देखने पे मुझे एक टंकी दिखाई दे रही है ये टंकी मुझे पानी की दिखाई दे रही है जो कि तीन मंजिला पर बनी हुई है।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

और यहाँ सबने किताबें खोल रखीं है और यहाँ उनके ऊपर कुछ लिख रहे है पीछे की तरफ मुझे एक हॉल दिखाई दे रही है जिसका कलर हमें ग्रीन ब्राउन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जोकि जामुनी कलर का है।